इसमें औरतें दिख रहीं हैं झंडा दिख रहे हैं पेड़ पौधे --

पेड़ पौधे दिख रहें हैं | छतरी दिख रही है आसमान दिख रहा है। ]>